एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी उसके बगल से एक फोर लाइन गया हुआ है बीच से। बीच मे कुछ पौधे लगे हुए हैं। एक चार पहिया वाहन जा रह --

एक मैदान है। मैदान में कुछ गमले रखे हैं। सीसीया रखी हुई हैं। सब बच्चे --

आसन कर रहे हैं। एक टीचर सीखा रहा है बॉउ मैदान के चारों तरफ बाउंड्री है।

एक रास्ता गया हुआ है रास्ते में अगल बगल बोहोत सारी बिल्डिंग मेज़े दिख रही है कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं चार पहिया और दो पहिया खड़ी हुई हैं कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं जो कि आपस में बातें कर रहे हैं।

एक बहुत व्यक्ति बड़ी इमारत बनी हुई उसी इमारत के सामने एक पार्क है। जिसमें चार पहिया वाहन खड़े हैं। एक एक बोलेरो खड़ी है। छोटी -- छोटी चार पहिया वाहन खड़ी हैं। कुछ व्यक्ति बाहर आ रहे हैं कुछ व्यक्ति अंदर जा रहे हैं और बिल्डिंग की तरफ।